उस साईड में बड़ा-सा रोड है उस पर एक टेम्पू जा रहा है| एक आदमी भी जा रहा है जो स्कूटी पे से जा रहा है।|

दो दो नाँव और हैं उसपे भी आदमी सवार है और ये लकड़ी का बनाया हुआ है ये उसके ऊपर मे लड़की का हरा वाला पेंट किया गया है। दो आदमी उसपर एक आदमी ने चशमा पेहना हुआ है एक टीशर्ट पहना--

ऊपर से ये लगास कैमरा है। ये बूढ़ा आदमी हैं। और आगे मे थोड़ा नोह नोव पगड़ी बांध के ठड़ा हुआ हैं । ये पानी में नोव चल चला रहा हैं उसके दो है और उसके साइड में ये आदमी बीच नदी में अभी हैं।

और ये सब आदमी अपने अपने अगरबत्ती हाथ में लिए हुए बैठा हुआ है !